साइड में ही कुछ पिलर खड़े हुए हैं।

की साइड में आधी कार और दिखाई दे रही है।

जोकि हरे कलर का है।

और कुछ धान की खेती भी दिखाई दे रही है।

एक ने ग्रे जैकेट पहनी हुई है।

और बड़ी बड़ी डेस्के दिखाई दे रही है।

इसमें कुछ हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एक बाइक भी खड़ी हुई है उसके आगे।

और बेंच पर कुछ डिजाइन बने हुए भी रखे हुए हैं।

सामने एक आदमी उसकी दूसरी साइड बैठा हुआ है।

और एक माउस रखा हुआ है जोकि टेबल पर रखा हुआ है।

इस फोटो में सामने एक हेयर कटिंग की दुकान दिखाई दे रही है।

सामने ही कुछ बिल्डिंगे हैं।

इस साइड में एक दरवाजा और लगा हुआ है।

इसके एक तरफ गमले रखे हुए हैं।

और एक तरफ सीसे वाले दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

जिस पर कुछ कपड़े सूख रहे--

पीछे कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो मे सामने बहुत सारे गुड्डे दिखाई दे रही हैं।

जिस पर कुछ बच्चिया अपना सामान रखे हुए हैं।

और उसके पीछे कुछ ग्राउंड है और सामने एक बिल्डिंग है।

बड़े से खंभे दिखाई दे रहे हैं।

पीछे कुछ पौधे दिखाई दे रहे है।

और उसपे ओ रेलिंग भी लगी हुई है।

थोड़ा सा डेकोरेट हुआ हुआ एक मंडप दिखाई दे रहा है।

और कुछ बच्चे भी दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं।

जिसपर द बॉडी लैब जिम दिखाई दे रहा है।

दोनों तरफ व्हाइट कलर की ग्रिल दिखाई दे रही है।

दरगाह में कुछ आदमी बैठे हुए हैं नीचे की तरफ।

ऊपर की तरफ कुछ लाइटे लगी हुई हैं कुछ लाइटे बड़ी और कुछ लाइटे छोटी दिखाई दे रही हैं।

मंदिर के दूसरी साइड भी एक छोटा मंदिर दिख रहा है।

चार बच्चे नृत्य कर रहे हैं।

इस फोटो में सामने एक रोड जाती हुई दिखाई दे रही है जोकि छोटी सी गली है।

ये बहुत अलग अलग कलर के गमले हैं कुछ वाइट कलर के हैं कुछ रेड कलर के हैं कुछ येलो कलर के हैं।

और सारी झाड़ियां और खड़ी हुई है।

और सामने एक रेड कलर का कपड़ा पहने हुए महिलाए दिखाई दे रही है।

इस फोटो में सामने की ओर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

कुछ पेड़ दिखाई दे रही है।

इस फोटो में सामने बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो मे सामने हॉर्स राइडिंग करते हुए कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यह रूम एक डॉक्टर का ओपरेशन थिएटर लग रहा है।

और उसके पास में ही एक टेबल पड़ी हुई है।

सामने ही एक बोर्ड लगा हुआ है।

और सामने कुछ पुस्तकों का भंडार भी है।